बहुत सारी चीजें टंगी है पैकेट --

एक आदमी बैठा वहाँ दीवार के पास नजर आ रहा है।

हमें पीले-पीले फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर नीला आसमान और सफेद बादल है।

इस तस्वीर में हमें आदमी दिखाई दे रहे हैं।

हमें टाइल्स लगे दिखाई दे रहे हैं जमीन में--

एक आदमी बैठकर मोबाइल चला रहा है।

और भी एक्सरसाइज मशीन रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी हैं।

हमें खंबे नजर आ रहे हैं।

और एक ट्रक खड़ा हुआ सड़क पे दिखाई दे रहा है ।

तस्वीर के अंदर हमें सफेद और नीली बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बांसुरी पकड़ी हुई नजर आ रही है।

सामान दिखाई दे रहा है लोगों के पास--

हरे-हरे पेड़ लगे हैं और ऊपर सफेद आसमान हैं।

और काली और गोल्डन भी जालियां लगी हैं।

पीले रंग की जालियां है गेट में--

ऊपर बोर्ड लगे हैं जिसमें नेचुरल लिखा है।

ये थोड़े छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में जालियां दिखाई दे रही हैं ।

पत्थर हमें बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

पीछे डेकोरेशन है इस आदमी के दो दिल बने हुए हैं।

पीली-पीली घास और पीला हमें जमीन में मिट्टी नजर आ रही है ।

हमें दिखाई दे रहे हैं अलमारी बनी हुई हैं।